यहाँ पे जो इस की कॉफी मिल जाती है जो कोल्ड ड्रिंक --

हल्दी प्याज टमाटर आलू प्याज सब्जियाँ फल वगेरह और दुसरा कुछ और बच्चों के लिए चॉकलेट गुड़िया बिस्कुट डेरी मिल्क फाइव स्टार --

तो लगता जो है आपको जो यहाँ पड़ है। जो बस अड्डा है। यहाँ देख यहाँ पे देखिये --

और देख कितने मस्त तरह से गाड़ी ने सजाया गया है और देखिये भारत माता की जय।

देखिये यहाँ पे सुद सूर्य ऊगा हुआ और मैं आपको बता दूँ इ जो सूर्य ऊगा हुआ आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये बहुत ही अच्छा --

ये बोहोत ही सावधानी --

तो दृश्य में जो देख रहे है क्रिकेट की जो प्रैक्टिस हो रही है प्रैक्टिस हो रही है जानते है क्रिकेट हमारे भारत में एक लोकप्रिय खेल इसमें की जो है --

जैसे आप लोग देख देख पा जो आपको जो यहाँ पर एस.बी.आई. का जो है जो आपको ये जो है बैंक दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पुजारी है जो मंदिर यहाँ पे तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं।

राम जी का ये जो एक मूर्ति जो है। हम यहाँ पे जो कुछ भी ये राम भक्त --

देख पा रहे है ये नजारा की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी तरीका से यहाँ पे लगती है।

की यहाँ पे जो बाल दाढ़ी का यहाँ पे बाल दाढ़ी सब कटिंग करने करने कटिंग मिल जायेगा।

और यहां पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पार्क है।

ये जो है कितनी मस्त जगह है। यहाँ पे यहाँ पे देखिये कितनी मस्त जगह है। यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए यहाँ पे ट --

तो जैसा की आप लोग देख पा इस बच्चे ये बच्चे जो हैं बहोत ही मस्त यहाँ पर जो है फोटो खिंचवा रहे हैं देखिये इस फोटो --

तैयार करने के बाद होता क्या है कि हमारा मकान जो है। पूरा मस्त हो जात् मजबूत मजबूत वगैरा हो जाता है।